ये पेड़ बेहद बड़ा और फैला पूरा विशाल पेड़ हरी भरी पत्तियों से बना है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है।